रूम मे बहोत अच्छी रोशनी व हवा आ रही है।

यह फोटो किसी मंदिर के बाहर की फोटो है यह मंदिर बहोत ज्यादा खूबसूरत है।

इस फोटो में एक थाली दिखाई गई है।

यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो इंदिरा कॉलोनी में बीकानेर में स्थित है।

जो एक दुकान है यह बहुत ही खूबसूरत दुकान है यहां बाहर जो बोर्ड लगा हुआ है।

यह बीकानेर में है तथा यहां पर बहुत अलग अलग प्रकार का सामान मिलता है जो रि--

यहां पर छोटे छोटे जानवर भी हैं जो पानी पी रहे हैं यहां बहोत ही अच्छा नज़रा है प्राक्रूतिक का--

यहां पर भगवान जी के ऊपर जो बंगली बनी हुई है वो भी येलो कलर की है जो बिल्कुल सोती जैसी लग रही है।

यह दुकान भरी हुई है इन सब चीजों से तथा दुकान में बहुत ज्यादा सामान होने की वजह से भरी हुई लग रही है।